ये मेला में बिकता है ये खाने में बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ठ है।

निकासी के लिए पोहोंचते है लोग अपना जो भी जमा-पूंजी होता है रखते है।

ये पालक पराठे है सर्दियों के लिए हेल्थ सर्दियों मे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा डाइट है।

ये एक ब्रिज है जिस्से दो शेहरों को जोड़ा जाता है।